पड़ी हुई हैं साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है और मोटरसाइकिल है औ--

और नीचे पीले कलर की पत्तियां बनी हुई हैं बीच में पीले कलर के गोल चक्र--

यहां पर देख पा रहे हैं एक घर दिख रहा है जो बाहर नीले कलर का और अंदर--

ये रहा है नीचे पत्थरों पर खड़ा है जो पत्थर ब्लैकिन व्हाइट दिख रहे है और पीछे पत्थरों का ऊंचा--

दिख रहा है बहोत सारे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और नीचे क--

यहां पे देख पा रहे हैं बहोत सारी लड़कियां दिख रही है सामने सीढ़ियां हैं जिन पर--

यहां पे देख पा रहे हैं बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे हरा कलर है और तीन आदमी--

पोस्टर लगा हुआ है और साइड में एक आइकन फिटनेस का पोस्टर लगे हुए हैं और कांच के--

दिख रहा है और जो दुकानें खुली हैं उनमें बाहर कुछ कपड़े लगे हुए हैं और सामने--

सफेद कोई नीले ऑरेंज लाल ग्रीन बॉक्स रखे हुए हैं और सामने एक खंभा है जिस पर ऊपर एक--

यहां पे देख पा रहे है एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो ऊपर हरे सफेद दिख रही है नीचे एक बड़ा नीला --